एक मोटर साइकिल जाते हुए दो मोटर साइकिल आते हुए दिखाई दे रहे है और फ्लाई ओवर के फ्लाई ओवर के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है पे लाइट के भी उत्तम व्यवस्था है।

ये सामने एक बस स्टॉप --